इसके ऊपर कि ओर शीट दिखाई दे रहा है इसके बगल में बाथरूम दिखाई दे रहा है।

और ये तो मज़े ले रहे हैं और वहाँ पर कई बहुत सारे पानी भी भरे हुए हैं।

व्हाइट कलर का पुट्टी हुआ है और उसके पट्टी लाल कलर के दिख रहे है और उसके सामने एक बाइक खड़ा है और उसके चारों तरफ पेड़ पौधे हरे-भरे दिखाई दे रहे हैं।

हमें यहाँ एक रूम दिखाई दे रहा है जहाँ पर एक बेड है दो चेयर है और एक ए.सी. लगा हुआ है और दो तकियें है चेयर का रंग लाल हैं।

सामने हमे ती गार्डन दिखाई दे रहे है जो बहुत ही हरे-भरे--